यहां पर दो सिंटेक्स की पानी की टंकी भी ऊपर गच्ची पर रखी हुई हमें दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमे एक गार्डन दिखाई दे रहा हैं इस गार्डन में --

इसे लाइट और पौधों से डेकोरेट किया गया है।

यहां प हमें एक झरना दिखाई दे रहा है।

यहां रोड पर दो भैंसे आती हुई दिख रही है।

और इन दो भैंसों के बीच में हमें एक महिला दिखाई दे रही--

और यहां पर श्री ट्रेडर्स रेड कलर के वर्ड से लिखा हुआ है।

और कुछ लोग इस झरने को एन्जॉय करते हुए दिखाइ दे रहें--

इस घर में मेहरूम कलर का भी शेड दिया हुआ है।

और इस खेत के पीछे की साइड एक पहाड़ दिख रहा--

यहां हमें बहोत ही भीड़ दिखाई दे रही--

जिसमें की बहोत सारा सामान पैकिंग करके रखा हुआ दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है।

और यहां बहोत सारे लोग शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस ईमेज में बहोत सारे लोग स्टेज पर एक प्रोग्राम होता हुआ देख रहे है।

और यहां पास ही में कॉटेज भी दिख रहे हैं और ऊपर की तरफ खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

इस गार्डन में एक बच्चा कमर पर हाथ रखे खड़ा हुआ है।

और इसने हरे कलर के जूते पहने हुए--